यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

चापलेजर दिखाई दे रहा हैं।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और दीवार भी दिखाई दे रही है बुलेट भी दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है।